मशीन दिखाई दे रही है ठरेशर मशीन काफी बड़ी नजर आ रही हैयहाँ पर एक ट्रेकटर नजर आ रहा है ट्रेकटर नीले और सफेद कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर काफी सारी बोरिए नजर आ रही है बोरिओ मे समान रखा हुआ है यहाँ पर काफी सारा काम चल रहा है यहाँ पर कुछ लोग काम करते नजर आ रहे है पीछे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ काफी बड़े नजर आ रहे है।

दिखाई दे रहा है पार्क काफी बडा दिखई रहा है पार्क मे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है पार्क काफी सारे बच्चों की खेलने की चीजे दिखाई दे रही है सलबट्टे नजर आ रही है यहाँ पर कुछ झूले नजर आ रही है।

फूलों की दुकान दिखाई दे रही है फूलों की दुकान काफी बड़ी नजर आ रही है यहाँ पर काफी अच्छा डेकोरेसन किया गया है यहाँ पे काफी सारे लाइट लगाए गए है यहाँ पर एक फूलों की माला दिखाई दे रही है माला काफी बड़ी दिखाई दे रही है।